और यहाँ अंदर एटीएम पे काफी भीड़ लगी हुई है लोग एटीएम में पैसे निकालने के लिए गए हुए है और भीड़ काफी बड़ी है।

हम अपने स सामने एक तस्वीर देख रहे है। इस तस्वीर में --

हम अपने सामने एक दृश्य देख रहे है हैं इस दृश्य में हम देख रहे है काफी खुला मैंदान है मैंदान में घाँस-मिट्टी दोनों है।

ये उ सूर्य का समय है जो ये उगना हुआ सूर्य है या उग रहा है अभी।

हम अपने सामने एक तस्वीर देख रहे है तस्वीर में हम देख रहे हैं की कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। ये गुफा की तरह एक तस्वीर है।